बहुत से पोस्टर भी है यहां पे आदमी भी है।

है यहाँ पर ऑक्सीजन है या इसमें गेट में ताला लगा हुआ है।

और उसमें एक ब्रेंच है वो बहुत से सुंदर और बहोत अच्छा से सजाया गया है बहोत अच्छा--

बहुत भेरायटी का बिस्कुट है बच्चों के लिए चिप्स है।

जिसमें एक ड्राइवर बैठा हुआ उसके सामने गुलदस्ता है।

इसके पीछे एक आदमी बैठा हुआ है सीट पर --

फुलौने भी इसमें लगाया गया है इसका पंडाल बहुत अच्छा है ऊपर मरकरी भी है।

यह एक पहाड़ है पहाड़ से पानी नीचे आ रहा है उस पर--

कोटिल्ले पौधे हैं उसके नीचे बहुत हरे भरे पेड़ हैं।

यहाँ पर बहुत सुसुसुंदर कुर्सी है दो बाइक है इसमें --

बहुत से बच्चे खेल रहे हैं और यहाँ पर खड़े हैं कुछ वहाँ पर एक --

इसके आगे पीछे बहुत से सुंदर सुंदर पौधे लगाए गए हैं यहाँ पर चबूतरा है।

यहाँ पर फूल है और बहुत सुंदर से सजावट किया गया है बहुत अच्छा से रंग पेंट उसका हुआ है।

इलेक्ट्रॉनिक दुकान है यहाँ पे हैमलेट है यहाँ पर है।

ये जमाला स्टेज है बहुत सुंदर सुंदर सजावट हुआ है बहुत सुंदर फूल है यहाँ पर दुला दुलोन है।

यहाँ पर कैमरा हो रहा है बहुत सुंदर दिखाई दे र --

एक बहुत सुंदर सजावट किया गया है फूलों से --

यहाँ कोई कर जा रहे हैं यहाँ पे यीशु मसीह --

यहाँ हाईस्कूल है उसमें गेट लगा हुआ है गेट पर बहुत से सारे पोस्टर टंगे हुए हैं उसमें बहुत --

कोई महल है महल के ऊपर गुमज बनाया गया है और चित्र भी है यहाँ पे --

आदमीन का इलाज कर रहे हैं।

यह किलनिक है इसमें एक आदमी बैठा हुआ है और एक आदमीीी जिसको --

दूसरा आदमी इंजेक्शन लगा रहा है यहाँ पे --

पंखे लगा हुआ है तीन चार पंखे हैं इसमें बहुत से ईसाई धर्म है यहाँ पे --

यहा पर दो आदमी बैठे है दिखाई दे रहा है और एक नहीं दिखाई दे रहा।

मंदिर साफ सफाई दिख रहा है।

बगल में भी कुछ सामाने रखा --